आस पास बहोत बड़ा जंगल है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं लाइटें भी लगी हुई हैं।

दिखाई दे रहे हैं और --

यह एक चित्र है इसमें एक आदमी ड्रिल मशीन से --

जो कि घर बना रहे हैं।

यह एक चित्र है इसमें बहुत से पेड़ दिख रहे हैं।

और बहुत से पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें बड़ा सा तालाब दिख रहा है।

और कुछ टेबल भी लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर अमेजिंग क्रिकेट ग्राउंड लिखा हुआ है।

और आसपास छोटे गमले लगे हुए हैं कुछ कुर्सियां और --

आसपास पेड़ भी लगे हैं।

जिसमें किराने की दुकान भी है।

एक स्टैचू भी बना हुआ है।

और बड़ी तस्वीरें लगी हैं।

जिसमें बहुत से लोग खड़े हैं।

और स्टूल और कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

यह एक चित्र है इसमें एक गार्डन है इसमें स्टेचू भी है।

यह एक चित्र है इसमें बहुत से लोग दिख रहे हैं।

और बहुत बड़े पेड़-पेड़ भी लगे हैं।

बहुत सी लाइटें और सर्किटें भी लगी हुई हैं।

और सब लोग खड़े हुए हैं।

इसमें बड़ा सा विद्यालय एवं आश्रम बना है।

जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

इसमें तरह-तरह की चीजें रखी हैं।

इसमें बड़ी नदी बनी है।